कोई सुपर मार्केट है छोटी दुकान भी हो सकती है आज कल तो कार्नर में मार्केट बना देते है।

नीचे मैकेनिक काम कर रहा हैं।

बाइक्स इंडस्ट्री में मोटर साइकिल इंडस्ट्री में बहोत अच्छा टेक्नोलॉजी को दिया है।